यह एक बिल्डिंग है जो सफेद और नीले रंग की है इसमें खिड़कियाँ लगी हुई हैं और दो बोर्ड लगे हुए हैं नीचे दो दुकानें हैं पर लोग खड़े हैं ।

यहां पर एक ऑटो रखा हुआ है जो पीले काले और हरे रंग का है इसके पास एक मकान बना हुआ है।

ये एक बिल्डिंग है जो की सफेद रंग की है खुला आसमान है इसमें बस खड़ी हुई है इसमें पेड़ लगे हुए है।